ये एक लाइब्रेरी दिख रही है जहां पर एक लड़का बुक्स परचेज कर रहा है।

और पीछे भी कोई लोग बैठे हैं बाइक वगैरह है पेड़ पोधै भी लगे हुए हैं।

गेंदे के गुलाब के फूलों का डेकोरेशन बहुत प्यार है इनका श्रृंगार भी बहुत ही अच्छा किया हुआ है।

यहां एक पुल के नीचे पानी में एक आदमी और एक छोटा बच्चा खड़े नजर आ रहे है।

ऐसा लग रहा है पुल बहुत पुराना है।